ब खूब सुंदर सजाया गया है इस बिल्डिंग को।

ये भी गौतम बुद्ध भगवान का मंदिर है यहाँ पर खूब सुंदर बना हुआ है चारों तरफ से सजावट की हुई है।

एक बहुत सुंदर बिल्डिंग बनी बन रही है।

ये रेलगाड़ी है य माल आना-जाना करती है।

यहाँ रेती मिट्टी पड़ी हुई है और लोग बाग अपना निर्माण का कार्य कर रहे है।

खुब सुंदर बिल्डिंग हैं और चारों तरफ से लाइट लगी हुई हैं का हैं।